मुझे इस तस्वीर में बहुत बड़ा फैक्ट्री दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी भी है।

इस बच्चे ने पीला कलर का शर्ट पहना--

लॉन्ग पेंट और शूज पहना हुआ है।

इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं।

बिल्डिंग के आगे एक गेट भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बाजार दिखाई दे रहा है।

इस रेस्टोरेंट को सुंदर से सजाया गया है।

मुझे इस तस्वीर मे शेड दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए बहुत सारे बेंचस भी बनाया गया है।

नीचे इस तस्वीर में एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है।

बड़ा का दीवार सफेद रंग का है।

इस रोड में दो काला भैस भी चल रहे हैं।

और बड़ा सा बिल्डिंग भी है।